सामने वन पिंक सोफा है और अं लकड़ी के ऐसे टेबल टाइप है।

ऊपर की पी_ओ_पी वाइट है और का कलर ब्राऊन है।

यह एक शेक की दुकान लग रही है जिसके ऊपर की लाइटिंग बहुत अच्छी है।

दोनों आस पास भगवान की मूर्तियां हैं

आजू बाजू बहोत हरियाली दिख रही है खुला मैदान दिख रहा है।

पास में बहुत भीड़ है एक आंटी पिक कुर्ते में कुछ चीजें निकाल रही है।

मारुति सुजुकी की एक वेगनर और एक टाइप कार दिख रही है।

आजू बाजू बहुत पेड़ है और हरियाली है और एक टॉवर भी दिख रहा है।

पास में ही एक टीन का डब्बा है और एक गाडी खड़ी हुए है।

और ये एक बहोत खराब सी जगह दिख रही है।

इसका शटर ब्राउन कलर का है और बुक्स के ठप्पे पड़े हुए हैं बहोत सारे।

के पीछे एक येलो कलर की बस दिख रही है जो शायद स्कूल बस है।

जो वॉल है उसका कलर रेड और पर्पल है और फ्लोर का कलर ब्राउन है।

ये ग्रीन हेवन अ कि पार्किंग की फोटो है।

एक गेट की तरफ जो जा रही है और व्हाइट फ्लोरिंग भी है।

मंदिर में सजावट बहोत अच्छी है आजू बाजू नारियल केले के पेड़ उगाए गए हैं।

जो फ्लोर है वो ग्रीन कलर का है पीली पट्टियां पीली लाइन बनाई हुई हैं।

आसमान नीला है जिसमें बादल है और पीछे बहुत हरियाली है।

लोग बाइसाइकल पे है कुछ लोग खेल रहे है।

गजानंद फास्ट फूड में एक छोटी सी सीढ़ी दिख रही है ग्रे कलर की जो ऊपर की ओर जा रही है।

ये कैशियर दिख रहा हैं उसके पास में एक फायर एक्टिंग्यूशर दिख रहा हैं।